यहां कुछ बैग भी रखे हुए हैं पीछे खिड़की पर पर्दा लगा है।

बहोत सारी दुकाने दिख रही है लोग इधर उधर जा रहे हैं।

सामने एक फैक्ट्री है यहां बहोत सारे वर्कर काम कर रहे हैं।

सामने उस सामान पड़ा है यहां एक पाइप रखी है।

स्कूल के बरामदे में बहोत सारे गमले रखे हैं।

दीवारों पर बहुत सारे कार्टून्स बनाए हुए नोटिस बोर्ड भी लगा है।

सामने एक बेड लगा है उस पर हरी चद्दर बिछी है।

पहाड़ियों पर टावर भी लगे हैं।

बिजली की तारे भी दिख रही--